एक कार्टून है जिसमे सामान भरा है।

कुछ लेडीज हैं और कुछ जेंट्स भी हैं।

यहां खाने पीने की समान मिलती है जैसे बर्गर पिज्जा पास्ता ये सब फ्राई करके दी जाती है।

एक ब्लैकबोर्ड भी है जिसके ऊपर टीचर पढ़ा रहे हैं।

बांस को एक दूसरे से जोड़ा गया है दो तीन बड़े बड़े पिलर हैं।

लाल पीले तेल का गेलन है और भी ढेर सारा प्रोडक्ट है।

बाहर चार जो दरवाजा है उसमें लोहे का गेट लगा है।

एक मजदूर के माथे पर समान है।